चित्र में मुझे कई गर्ल्स दिखाई दे रही हैं।

चित्र में मुझे पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

चित्र में मुझे कुर्सी रखी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे फ्लावर का डेकोरेशन किया हुआ दिख रहा हैं।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

चित्र में मुझे छोटे छोटे पौधे और पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे पानी की टंकी रखी दिख रही है।

चित्र में मुझे सीढियां दिख रही हैं।

चित्र में मुझे झोले पे रखे सामान दिख रहें हैं।

चित्र में मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है।